यहां पे दोनों तरफ स्पीकर्स भी रखे हुए हैं।

यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखने को मिल सकते हैं।

फोटो में बहोत से लोग गाड़ियों से इधर उधर जा रहे हैं।

इसका कलर येलो है इस घर के बाहर में एक स्कूटी दिख रहा है।

यहां पे हमे एक शीशे का बना हुआ टेबल दिख रहा हैं जिसके बगल में दो कुर्सियां भी रखी हुई--

इस फोटो में हमें धान की खेती दिख सकती है और छोटी छोटी कुछ पहाड़ भी देखने को मिल सकते हैं।

इस साइड से किसी मंदिर का तस्वीर लग रहा है जिसके बाहर हमें दो आदमी दिख रहे हैं जो कि यहां पर झाड़ू लगा रहे हैं।

जमीन पे हमें बहोत सारे घास भी देखने को मिल सकते है।

इस फोटो में हमें कुछ पत्थर दिख रहे हैं।

एक औरत है जिसने लाल कलर का पर्स टांग रखा है।

इस घर के बगल में बहुत छोटे छोटे घर भी देखने को मिल सकते हैं।

यहां पे एक एक आदमी जो की सफेद कलर का टोपी लगाए हुआ है वह कुछ काम कर रहा है।

इस दुकान में हमे लगभग हर चीज दिख सकती है।

हमें पॉट में बहोत से छोटे छोटे पे प्लांट भी देखने को मिल सकते हैं।

एक आदमी काला कपड़ा पहने हुए रजिस्टर लेके खड़ा है।

यह शायद किसी पार्क का तस्वीर लग रहा है जिसमें हमें एक छोटा सा घर भी दिख रहा है जिसके टीना से लाल छत बनाया हुआ है।

किसी पार्क का तस्वीर है जहां पे अगल बगल में घर भी हैं।

यहां पे बहोत सी कुर्सियां लगी हुई है जिस पे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पे हमें एक टिने का घर भी दिख रहा है और कुछ लाइट्स भी दिख रही हैं।

यहां पे बच्चों के खेलने के बहोत सारे झूले हमें देखने को मिल सकते हैं।

और हमें लोहे के कुछ बैरिकेड भी देखने को मिल सकते हैं।

इस फोटो में बहोत से छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं।

सामने हमें एक टावर भी देखने को मिल सकता है।